और सीढ़ियां नजर आ रही है।

बाहर एक कार और एक एक्टिवा खड़ी है।

एक शीशा लगा हुआ है एक ए_सी लगा है।

एक बैठने की चेयर दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक कार दिख रही हैं पीछे पूरी सड़क खाली दिख रही हैं।

काफी सारी बाइके दिखाई दे रही है।

और यहां पर सारा लेडीज का समान है मेकअप रिलेटेड --

एक यहां पर हमें बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा है लोरियाल गार्नियर और एक यहां पर एग्जॉस्ट फैन लगा है।

इस फोटो में कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं।

एक बेड है कर्टन लगे हैं।

अ नीचे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

फर्श पर टाइलें लगी हुई हैं।

सामने बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है विनर ।